और बहोत सारे कपड़े हैं दो पानी की बोतल भी है और किलर लिखा हुआ है ऊपर मे।

यह कोई तालाब दिख रहा है और तालाब के चारों साइड पक्की सीढ़ियां बनी हुई है।